दो हाथी की प्रतिमा दिखाई दे रही है एक हाथ की प्रतिमा एक बड़े पेड़ के नीचे--

और पुल के साइड में एक रेत का टीला भी दिख रहा है।

यहां एक छोटा रेलवे स्टेशन दिख रहा है रेलवे स्टेशन में अभी ट्रेन खड़ी हुई है दिख रही है।

जहां पर एक नदी या तालाब दिख रही है तालाव के किनारे बड़े-बड़े पेड़ और कुछ बिल्डिंगे में दिख रही है।

यहां एक बहुत बड़े कार्यालय की बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग के किनारे-किनारे कोई बड़े --

रखी हुई हैवर्ल्ड बुक अन्य बुके नजर आ रही है।

यहां पर एक बहुत बड़ा ग्राउंड दिखाई दे रहा है ग्राउंड में हरी- हरी लान उगी हुई दिख रही है।

यहां पर एक स्कूटी और एक बाइक का शोरूम दिखाई दे रहा है शोरूम एक बड़े हॉल में दिख रहा है।

यहां पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग की छत टिन की छत की बनी हुई दिख रही है।

बोर्ड दिखाई दे रहा है पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग के सामने कुछ चारा लगा हुआ--

यहां पर एक मेंस पार्लर की दुकान दिख रही है मेंस पार्लर की दुकान में--

यहां एक बहुत बड़ा तालाब दिख रहा है तालाब में बहुत सारा पानी भरा हुआ दिख रहा है दूर पर --

कार के साइड में एक व्यक्ति दिख रहा है जिन्होंने सफेद शर्ट और काला पेंट पहना हुआ है।

यहां एक मंदिर के सामने टीन का लंबा सेट दिखाई दे रहा है लम्बे सेट के नीचे स्टील की --

यहां पर एक लंबी- बड़ी नदी दिखाई दे रही है ऐसा लगता है यह पहाड़ी पर से आ रही है।